जो की गुलाबी पीला सफेद कलर की बहोत सुंदर दिख रही है।

और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

और कुछ भगवानजी की मूर्तियां भी है।

और बहुत सारे बलूंस का डेकोरेशन भी किया हुआ है।

और साइड में कुछ चेयर्स भी पड़ी हुई हैं।

और दो व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे है।

और इसके बाजू में एक ठेला खड़ा हुआ भी दिख रहा है।

लैपटॉप और प्रिंटआउट भी रखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में ग्राउंड दिख रहा है जिसमें--

पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे हरियाली छाई हुई है।

जीसके आस पास एक चेयर भी दिख रही है।

काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बलूंस की डेकोरेशन की हुई है।

और कुछ लोग साइड में खड़े हुए दिख रहे हैं।